जैसे कि मैं देख पा रही हूं मुझे यहां एक टेबल दिख रही है जोकि लकड़ी की है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं कि मुझे इस चित्र में दो आदमी दिख रहे हैं जैसा कि मैं देख पा रही हूं मुझे यहां एस_बी_आई लिखा हुआ दिख रहा है।

जैसे कि मैं देख पा रही हूँ मुझे यहाँ पे पेड़ दिख रहे हैं जैसे कि मैं देख पा रही हूँ मुझे यहाँ सूखी घास दिख रही है जैसे कि मैं देख पा रही हूँ मुझे यहाँ आसमान दिख रहा है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं कि मुझे नीले रंग की दीवार दिख रही है।